खुर्सी रखा हुआ हे इधर.

कार्यालय जागृति युवा क्लब है.

उधर मकान है इधर पेड़ हरा भरा दिख रहा--

और छट घाट है और यहां पे कुछ पानी ले रहे हैं कुछ लोग सनान भी कर रहे है.

ठेला लगल है। इधर दो टेंपो लग --

ठेला पे कुछ सामान ले रही है इधर पेड़ दिख रहा है और इस साइड भी पेड़ है.

अंदर हूँ बड़ा सा फील्ड है.

दो बसे दिख रही है पीछे पेड़ है।

यहां एक स्टेज सजा हुआ है.

यहां खिलाड़ी फील्ड में दौड़ रहे हैं.

और हरा कलर नीला कलर का पहने हुए हैं कुछ लाल है नीचे पेंट ब्लू पहने हुए हैं.

एक स्थान हे जिसमे गौतम बुद्ध का मूर्ति दिख रहा हे.

जो आसन मारके बैठे हुए हैं।

बहुत से लोग एक जगह एकट्ठे हैं.

है और एक आगे खड़ा है.

और एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हे.

यहां लोग बैठे हुए हैं.

पहले का यहां पे लगाया हुआ है पोस्टर .

गुब्बारा है ढेर सारा नीचे दरी बिछाया हुआ है।

और बहुत सारा गुब्बारो से सजावट की गई हे.

और इस साइड अल्फा कंप्यूटर सेंटर लिखा हुआ है बोर्ड पे।

ओर यहां पे एक वक्ति बीच में खड़ा है एक मोबाइल लेके पीछे खड़ा दिख रहा है.